हमें खिड़कियां दिखाई दे रहे हैं।

ऊपर दिए गए छवि में हमें बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

हमें बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे है।

स्लाइड्स के रंग अलग अलग सी है।

टीबीओ के पास दिखाई दे रहे है।

बहोत सारी मछलियां बाजार में मौजूद है।

एक एक द्वार नजर आ रहा है।

हमें कुछ लोग नजर आ रहे हैं।

एक आदमी का मुंह ब्लर किया हुआ है।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

रास्तों को रेड और येलो ब्लॉक से बनाया गया है ।

हमें थोड़ा सा जमीन दिखाई दे रहा है ।

एक अलग आदमी का हाथ हमें दिख रहा है।

बहुत सारी लाइट्स इस एरिया में जले हुए हैं।

मे आकाश दिखाई दे रहा है।

आस पास बहौत सारे पेड़ पौधे मौजूद हैं।

कुछ लोगों के मुंह ब्लर किया गया है।

दूर में पहाड़ स्थित है।